ये है बालुरघाट एयरपोर्ट । उसके सामने बहोत सारे आ लडके-लडकियाँ खड़े है बाइक लेके। अंदर जा रहा है। पै --

वाइट कलर की बिल्डिंग हैं।